शीशा का लगा हुआ है और यहां पे बहुत से लोग--

और ये कारें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैऔर इनका रंग भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है।

ये एक इमारत है इसका रंग सफेद है।

यह एक इमारत है जिसके ऊपर डिलाइट लिखा हुआ है और इस पे बहुत सी--

ये कार का शोरूम है जिसमें तीन कारें खड़ी हुई हैं।

हमने इधर बहुत सी अलमारियां पड़ी हैं जिनके अंदर किताबें और बहुत सी मुखतलिफ फाइल्स पड़ी हैं ।

और तस्वीर खिंचवा रहा है इस आदमी ने--

और इन्होंने मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में उजार पकड़े हुए हैं।